सामने एक हाल में दो लड़के बैठे हुए हैं जो की तबला बजाते हुए नजर आ रहे हैं साथ में एक माइक लगा है।

--और सामने कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही है उनके चारों और पंख दिखाई दे रहे है और यह अत्यधिक प्राचीन दिखाई दे रहा--

सामने एक कार दिखाई दे रही है जहां पर ये कार खुली हुई है जिसे एक का आदमी सही करते हुए नजर आ रहा है।

सामने एक गौशाला दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारी गाय बंधी हुई है और गाय के सामने एक पेड़ लगा हुआ है जिसपे एक लोहे की नसेनी लगी हुई है।

यह सामने एक एक डी जे दिखाईं दे रहा है जिसपे हिंदुस्तानी लिखा हुआ है यहाँ पे चुंगे दिखाईं दे रहे है।

साथ ही एक शटर दिखाईं दे रही है यह एक रोड़ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है सामने खुला आसमान भी नज़र आ रहा है डीजे पे एक छनी लगी हुई नज़र आ रही--

यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने मोर पंख लगाया हुआ है और बांसुरी बजाते हुए नजर आ रहे--

यहाँ मैदान में बहुत से बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे है बहुत सारे लोग उनको देखते हुए नज़र आ रहे है।

और सामने खिड़कियाँ लगी हुई है जाली वाली--

सामने एक हॉल सा दिखाई दे रहा है मानो की मंदीर हो और एक लड़का चश्मे लगाए यहाँ पे नीली शर्ट पहने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा।

इनका पूरा कलर हरे कलर का दिखाई दे रहा हैं।

इसमें आधे में धान की पौध लगी हुई है तो आधे में लठी लगाएं हुए है सामने सामने एक मैदान दिख रहा है जहाँ पे सूखी हरी घास लगी हुई है और इस खेत में एक लडका खडा हुआ दिखाई दे रहा है।